ये कहीं का बाल काटने की दुकान जैसे दिखाई पड़ रही है दुकान बहौत अच्छी सजी हुई है।

यह भी एक अस्पताल जैसा नज़र आ रहा हैं।